ये एयरटेल कंपनी का सर्विस सेंटर है।

पैडी के साथ एक केमिस्ट की दुकान भी है।

इमारत के बाहर काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं।

इसमें एक रोड का नजारा दिख रहा है।

होटल के बाहर कुछ व्यक्ती खड़े हैं।

इस सैलून की अभी ओपनिंग हुई है।

चट्टान के नीचे एक गुफा बनी हुई है।

और कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

सामने एक सड़क दिखाई दे रही है।

इसके बाहर एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

नीचे काफी संख्या में दरी बिछी हुई हैं।

लेडीज मेकअप का स सामान मिलता है।

पुस्तकालय के अंदर दो पंखे और कुछ ए_सी लगे हुए हैं।

के अंदर कुछ व्यक्ति सनान कर रहे हैं।

और कैरेटो में सब्जी रखी हुई है।

यहां पर एक मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है।

सामने एक गिरजाघर दिखाई दे रहा हैं।

और एक कूड़ा दान रखा हुआ है।

इसके अंदर गिफ्ट शॉप भी है।